नमस्कार जियोजेब्रा में कोण और त्रिकोण या त्रिभुज के बुनियादी भाग पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
यदि आप पहली बार जियोजेब्रा का उपयोग कर रहे हैं तो कृपया स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जियोजेब्रा का शुरूआती ट्यूटोरियल इंट्रोडक्शन टो जियोजेब्रा देखें
जियोजेब्रा के साथ शुरूआत के लिए मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उबंटू वर्जन 1004 एलटीएस और जियोजेब्रा वर्जन 32400 का उपयोग कर रहा हूँ
इस ट्यूटोरियल का उद्देश्य जियोजेब्रा के उपयोग से यह सत्यापित करना है कि त्रिकोण के आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है
इस ट्यूटोरियल में हम पोलीगान एंगल और इंसर्ट टेक्स्ट टूल्स का उपयोग करना सीखेंगे
अब पहले पॉलीगॉन टूल चुनें
बहुभुज बनाने के लिए इस मामले में त्रिकोण ड्राइंग पैड पर क्लिक करके तीन कोणबिंदु चुनें फिर पहले कोणबिंदु पर क्लिक करें
त्रिकोण के आंतरिक कोणों को मापने के लिए एंगल टूल चुनें
आप कोण को दो तरह से माप सकते हैं
दक्षिणावर्त तीनों कोणबिंदुओं आ ब और फिर सी पर क्लिक करें यह अल्फा नामक कोण एबीसी को मापेगा
दूसरा तरीका है कि रेखाखंड चुनना जो कोण बनाएगा
वृत्तखंड आ और वृत्तखंड ब चुनें इस समय वामावर्त बीटा नामक कोण बीसीए मिलेगा
उसी तरह सीएबी कोण गामा को मापेगा
ध्यान दें कि सभी कोण ग्रीक ऐल्फाबेट के रूप में मानक गणितीय पद्धति के अनुसार नामित हैं
और यदि आप कोणबिंदुओं का वामावर्त चुनते हैं जैसे सी ब आ तो बाहरी कोण मापा जाता है
अपने ड्रॉइंग पैड पर टेक्स्ट जोड़ने के लिए इंसर्ट टेक्स्ट टूल का उपयोग करें
फिर ड्रॉइंग पैड पर कहीं भी क्लिक करें टेक्स्ट विंडों दिखाई देगा
अब कोण एबीसी दिखाने के लिए मैं इसे दोहरे उद्धरण चिह्नों में एंगल एबीसी टाइप करूँगा दोहरे उद्धरण चिह्न बंद करूँगा चिन्ह जोड़ूँगा और फिर अल्फा पर क्लिक करूँगा
ओक पर क्लिक करता हूँ तो मुझे कोण एबीसी की वेल्यू प्राप्त होती है
उसी तरह अंकगणितीय करने के लिए इस त्रिकोण के आंतरिक कोण के योग को दर्शाने के लिए इंसर्ट टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें ड्रॉइंग पैड पर क्लिक करें दोहरे उद्धरण चिन्हों में टाइप करें Sum ओएफ इंटीरियर एंगल्स ओएफ ट्रायंगल एबीसी दोहरे उद्धरण चिन्ह प्लस बंद करें और कोष्ठक ओपन करें अल्फा बेटा गम्मा टाइप करें कोष्ठक बंद करें ओके क्लिक करें
अब आप प्रदर्शित योग देखिए
अब मूव टूल चुनें और आकृति को स्थानांतरित करें इस केस में कोणबिंदु आ ब या सी और आप देखेंगे कि आंतरिक कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है
इस पाठ में मेरा पसंदीदा भाग यह बताना है कि जब त्रिकोण के सभी तीनों कोणबिंदु सीधी लाइन पर होते हैंदो आंतरिक कोण शून्य कैसे हो जाते हैं और तीसरा 180 डिग्री हो जाता है इस तरह से एक ऋजुकोण
आगे हम दो और चीज़े सीखेंगे ड्रॉइंग पैड प्रोपर्टिस और जियोजेब्रा में आकृति को कैसे हटाया जाय
पहले ड्रॉइंग पैड प्रोपर्टिस
ड्रॉइंग पैड पर कहीं भी दायाँ क्लिक करें और फिर ड्रॉइंग पैड पर क्लिक करें
ड्रॉइंग पैड प्रोपर्टिस विंडो ओपन होती है
यहाँ आप ड्रॉइंग पैड के बैकग्राउंड कलर पृष्ठभूमि रंग को बदल सकते हैं
यहाँ आप एक्स अक्ष और य अक्ष दोनों अक्षों की प्रोपर्टिस बदल सकते हैं और आप यहाँ ग्रीड की प्रोपर्टिस बदल सकते हैं
कुछ प्रोपर्टिस जो ध्यान में रखने लायक हैं यूनिट जिसे आप अक्ष के लिए जोड़ सकते हैं लेबल्स जिसे आप अक्ष के लिए जोड़ सकते हैं और एक्स अक्ष अनुपात य अक्ष
जब हम साधारण ज्यामिती करते हैं तो हम अक्सर इसे 11 के अनुपात में रखना पसंद करेंगे
जब आप सब बंद करते हैं तो सभी परिवर्तन जो आपने किए सेव हो जायेंगे
अब ड्रॉइंग पैड पर एक आकृति हटाने के लिए आकृति के ऊपर माउस लायें मैं बाहरी कोण पर माउस मूव करूँगा राइट क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि यहाँ आकृति का नाम दिखाई दे रहा है तथा फिर डिलीट पर क्लिक करें तो आकृति हट जायेगी
आकृति को डिलीट करने का दूसरा तरीका यह है कि एल्जेब्रा व्यू पर ऑब्जेक्ट चुनें इस पर राइट क्लिक करें और डिलीट पर क्लिक करें
ध्यान दें कि जब मैं कोण गामा डिलीट करता हूँ तो यह टेक्स्ट भी गायब हो जाता है क्योंकि यह कोण गामा पर निर्भर है
यदि जो मैंने डिलीट किया उसे मैं उंडो करना चाहूँ एडिट और फिर उंडो पर क्लिक करें या सीआरटीएल ज़ दबायें
जियोजेब्रा में कई आकृतियों को डिलीट करने के लिए साधारण तरीका यह है कि ड्रॉइंग पैड पर कहीं भी लेफ्ट क्लिक करें उन सभी आकृतियों पर माउस ड्रेग करें जिन्हें आप डिलीट करना चाहते हैं उंडो क्लिक करें सभी आइटम्स चयनित हैं और फिर अपने कीबोर्ड पर डिलीट दबायें
फिर से उंडो पर क्लिक करके इसे उंडो करें
अब मैं फिर से टेक्स्ट का रचनाक्रम समझाना चाहूँगा
टेक्स्ट जिसे दिखाने की आवश्यकता है वह डबल क्वोट्स में होना चाहिए
जैसा कि उदाहरण में दिखाया गया है
जियोजेब्रा बेरिएबल्स की वेल्यू के लिए बेरिएबल नाम का उपयोग करें जैसा कि बिना उद्धरण चिन्हों के एल्जेब्रा व्यू में देखा
वेल्यू के साथ अंकगणितीय कार्य करने के लिए ब्रैकेट्स में बेरिएबल्स का उपयोग करें
आखिर में टेक्स्ट जोड़ने के लिए चिन्ह का उपयोग करें
आगे हम कोण और टेक्स्ट के रंगों के मिलान के कुछ तरीकों को देखेंगे
अब यदि मैं टेक्स्ट का रंग बदलना चाहता हूँ मैं राइट क्लिक करूँगा और ऑब्जेक्ट प्रोपर्टिस को चुनूँगा कलर पर जाऊँगा और रंग बदलूँगा तथा क्लोज क्लिक करूँगा
अब मैं यहाँ कोण पर जा सकता हूँ राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रोपर्टिस चुनकर यहाँ मैं वर्तमान विंडो चुन सकता हूँ और सही मिलान के लिए इस रंग पर क्लिक कर सकता हूँ
उसी तरह यदि मैं जूम इन और जूम आउट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ जूम इन के लिए जूम इन और जूम आउट के लिए ड्रॉइंग पैड पर जूम आउट ऑप्शन का उपयोग करूँगा
कोण की ईकाई को बदलने के लिए मैं ऑप्शन कोण यूनिट पर जा सकता हूँ और डिग्री से रेडियन्स तक बदल सकता हूँ
तो केवल सार के लिए मैं जानता हूँ कि कोण का माप रेडियन्स से डिग्री तक कैसे बदलते हैं मैं जूम इन और जूम आउट भी कर सकता हूँ
अब नियत कार्य के लिए
सत्यापित करने के लिए दर्शाएँ कि त्रिकोण का बाहरी कोण सम्मुख आंतरिक कोण के योग के समतुल्य होता है
निम्न स्टेप करें पोलीगान टूल का उपयोग करके एक त्रिकोण खींचें
लाइन थ्राउघ त्वो पॉइंट्स टूल का उपयोग करके किसी एक भाग को बढ़ाएँ
सम्मुख आंतरिक कोण और बाहरी कोण को मापने के लिए कोण टूल का उपयोग करें
परिणाम दिखाने कि लिए इंसर्ट टेक्स्ट टूल का उपयोग करें मूव टूल और मूव थे फ्री ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करके इसे सत्यापित करें
मैं आपको बताता हूँ जो मैंने किया है
आपको केवल मूव टूल और मूव थे फ्री ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करने की आवश्यकता है
आपको ध्यान रखना होगा कि बाहरी कोण हमेशा सम्मुख आंतरिक कोण के योग के समतुल्य होता है
मैं स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का आभार प्रकट करता हूँ जो कि टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है
यह आई सी टी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एम एच आर डी भारत सरकार द्वारा समर्थित है
आप इस के बारे में अधिक जानकारी इस वेबसाइट पर देख सकते हैं
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है
आई आई टी बॉम्बे की तरफ से मैं रवि कुमार अब आप से विदा लेता हूँ